ये चित्र मा जी हम देखि सक्दोन कि सामणी पर हम ते दुई नीला रंगा का शटर बंदन होयां दिखेण लग्यां भैरम हम ते एक स्कूटी खड़ी होईं दिखेणी यख मा हम ते एक मन्खि खड़ु कुई दिखेण लग्युं।

ये चित्र मा जी हम देखि सक्दों कि यखम हम ते बड़ु बाड- भारिकु पेट्रोल पंप दिखेण लग्युं जै का नीसाण तम ते कई छोटी गाड़ी त कई ब-बड़ी गाड़ी पेट्रोल भरदन दिखेण लगीं।

ओर पोर हम ते झाड़ीन उगी दिखेण लगीं मथि एक बड़ु जंगल दिखेण लग्युं।

जखा मा हम ते एक कट्टा भी दिखेणु दुई चार मन्खि हम ते वे कुर्सी पर बैठ्यां भीन दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा जी हम ते एक रेल दिखेण लगीं जै मा जी हम ते कांच का सिसान दिखेण लग्यां।